ये एक रूम है जहा पे देखेंगे काफी सूंदर है येल्लो कलर का पेंट हुआ है और मेट भी अछि बिछी है यहाँ पे बहुत सरे लोग- -

पीले और काले कलर से पेंट हुवे बारी बारी और बीच लड़का खड़ा है जो के पिंक कलर की टी शर्ट पहना हुवा है पीछे पानी दिखरहा है और बहुत सरे हरा बड़ा पेड़ दिखराहे है और पूरा आसमान दिखरहा है.